बडे से कॉलेज को देख रहे हैं।

कुछ बड़े पत्थर ऊपर रखे हुए हैं।

बहोत से लोग हमें यहां पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं।

दीवार पर रंग बिरंगी लाइटों का रिफ्लेक्शन दिख रहा हैं।

ऊपर कुछ कपड़े बंधे हुए हैं।

बहोत ही बड़ी सीढ़ी देख रहें--

कुछ डब्बे रखे हैं जिनके अंदर चॉकलेट रखे हुए नजर आ रहे--

आम नाशपाती तरबूज।

बाहर बहोत सी गाड़ियां पार्क दिखाई दे रही है कुछ बड़े पेड़ भी हमें दिखाई दे रहे--

ऊपर बड़ा सा बैनर लगा है बाहर हमें--

जीन पर कुछ लोग बैठकर खाना खाते नजर आ रहे हैं।

फ्रेम पर बहुत सी बड़ी खिड़कियां दरवाजे हैं कुछ लोग भी हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर हमें बहोत से फल रखे हुए नजर आ रहे हैं।

सबसे नीचे हमें कुछ फोटो फ्रेम नजर आ रहे हैं।

कुछ लोग भी हमे यहां दिखाई दे रहे हैं।

बहोत से लोग बैठे हुए नजर आ--

सामने हम कुछ मजदूरों को देख--

हमने बड़े से मैदान को देख रहे हैं।

साथ ही ये ऊपर छप्पर बना हुआ है।

दो ग्लास भी हमे यहां दिखाई दे रहे--

दीवार पर हमें टी_वी दिखाई दे रही है।

हमें यहां एक सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

हम एक रेत के ढेर को देख रहे--

सामने हम एक बड़े से स्टेज को ये--